प्ले ग्राउंड लिखा हुआ हैं और बाहर की तरफ बहोत सारे व्यक्ती खड़े हैं और दीवार पर कुछ चमकदार लाइटें भी लगी हुई हैं।

यहां सामने एक बोर्ड लगा है उसपर डी_यू --

दुकाने बनी हुई है बिना शटर की उनके ऊपर पीला पेट का रखा है।

सीढ़ियां लगी हुई हैं ऊपर जाने के लिए।

इसे दीवार में फिट करा हुआ है इसके ऊपर लकड़ी की खिड़की है नीचे की तरफ--

इसमें ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े हरे पत्ते वाले नारियल के पेड़ लगे हुए हैं।

सफ़ेद रंग की ऊंची ऊंची बिल्डिंगे नजर आ रही हैं।

ये एक शादी समारोह का वीडियो है यहां पर सामने एक स्टेज रखा हुआ है।

नीले रंग का डब्बा रखा हुआ है अंदर जाने के लिए एक शीशे का दरवाजा लगा हुआ है।

अंदर की तरफ एक सफेद रंग का काउंटर भी बना हुआ है।